यह एक चित्र है। इस चित्र में एक बड़ा-सा घर दिखाई दे रहा है। कुछ मोटर साइकल्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है। इस चित्र में एक बड़ा-सा मैदान दिखाई दे रहा है। जिसमें कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कई सारे फूल --

इरेजर भी दिखाई दे रहा --